बहुत पीछे धुंधला धूधला सा पहाड़ दिख रहा है हल्का हल्का।

बहुत सारी लाइटें लगी हैं।

और कुछ टायर पड़े हुए हैं। लिप एक आध कार रखी हुई है।

बीच में कुछ तारों से बना हुआ कोई एक साँचा सा दिखाई दे रहा है।

सभी सीटे खाली है लेकिन और दो खिड़कियां लगी हुई है पीछे।

एक ई रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पीले और आसमानी रंग से कुछ पिक्चर बना हुआ है।

और ये किसी दुकान पर रखे हुए हैं।